यहाँ पर स्प्रे भी रखा है जैसे पानी बाल में डालते है ना वहाँ पर कैंची भी रखी हुई और कंघी भी मुझे दिखाई दे रहे बहोत सारे वहाँ पर कपड़े भी दिखाई दे रहे है बड़ा अच्छा लग रहा हैं।

दिखाई दे रहे है बहोत सारे फीमेल भी दिखाई दे रहे है मेल भी दिखाई दे कोई बच्चे भी दिखाई दे मतलब --